टेंट सा लगा हुआ है। रौशनी लगी हुई है बल्ब लगे हुए हैं और बहुत सारी हरी घाश है।

गोल गोल और आजू-बाजू पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और बिजली के लैंप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बड़ा गेट लगा है। बाहर बाजु में पोस्टर लगा जगदम्बा लाइब्रेरी लिखा है और ऑफिस के बाहर काँच लगा हुआ है आजू-बाजु दो --

इस इमेज में मुझे एक जिम दिखाई दे रही है जिसकी दीवालों पे बोहोत सारे फोटो लगे हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहे है और जीप भी खड़ी हुई दिखाई दे रहीं जो साफ़ दिखाई नहीं दे रही --

और उसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां है बाहर एक कार खड़ी हुई है एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक चिप करके दुकान दिखाई दे उसमे जूते टंगे हुए हैं।

इस इमेज में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल के अंदर बोहोत सारी मशीने रखी हुई हैं।